और यहां पर डिजाइनिंग के तौर पे बाहर आप देख रहे हैं गुलदस्ते लगे हुए हैं जिसमें कई सारे कलर के फूल हैं।

यह एक मैदान है मैदान में कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं और दूर एक बिल्डिंग सी भी दिखाई दे रही है।

यहां पर ये घर देख रहे हैं आप कितना सुंदर घर है यहां पर लाइटे ही लाइटें लगी हुई है।

और ब्लैक कलर की पेंट है और व्हाइट कलर के जूते हैं किसी ने काले कलर के जूते पहने हुए हैं।

और यहां पर एक लड़का पता नहीं लड़की के साथ में क्या कर रहा है और लड़कियां देख रही है कि कि ये क्या हो रहा है।

लोवर में लड़कियां बहुत सेक्सी लगती है और बहुत ही ज्यादा कमाल लगती है।

और साले को भर भी सकते हैं पूरा तगड़े वाला यहां पर पेट्रोल पंप है ये साले को एक दिन में ही खाली कर दो--

यहां गार्डन में आप देख रहे हैं बहुत बच्चे खेल रहे हैं जो बहुत सारा मजा ले रहे हैं।

और यहां पर आप देख रहे हैं हरे चद्दर सी भी दिखाई दे रही है।

और इसके बराबर हमें एक लेडीस भी नजर आ रही है। जो खड़ी हुई है जो बहोत अच्छी लग--

साला इतनी तादाद में यहां पर साइकल खड़ी हुई है काफी तादाद में।

और अंदर कोचिंग चल रही है मुझे लगता है यहां पर बड़े लेवल पर कोचिंग --

और यहां पर कुछ लोग किताबों को देख भी रहे हैं और खरीद भी रहे हैं।

यहां पर आप देख रहे हैं ये एक बिल्डिंग मटेरियल है।

क्योंकि ये कुछ पंजाबी में लिखा हुआ है और कुछ रोशनी ज्यादा नहीं है।

यहां आप देख रहे हैं डेकोरेशन कितना खतरनाक लग रहा है और ये घर का डेकोरेशन बहोत ही अच्छा लग रहा है।

और उधर असली माल घूम रहे हैं एक लड़की है जो असली माल है और एक लड़का है जो नकली माल है।

उन्होंने हमें कहीं भी आश्रम नहीं दिया और ये जन कल्याण समिति है समिति वाले साले खा जाते हैं पैसे कहीं भी हो कैसा भी हो।

यहां आप देख रहे हैं एक दुकान है जिस पर एक हरी कलर की डोरी टंगी हुई है और यहां मैगी भी दिखाई दे रही हैं।